इक मजी फूल उडान अच्छा लगया इक मजी डी जे अच्छों लाग्यो ईक मजी लोहा के पाइप की रोड करचन लगी इक मजी कई सारी रंग-बी-रंगी लाइट भी अच्छन लगी।